एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिस पर गेट लगा हुआ हैं जाली लगी हुई हैं वो दिखाई दे रही है बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है पाइप दिखार दिखाई दे रहा है।

एक डेकोरेशन दिखाई दे रही है जो की एक घर में है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और सीढ़ियां दिखाई दे रही है जिसपे रेलिंग लगी है कुछ फूल दिखाई दे रहे है जो लगे हुए है।

एक अ एक सड़क सी दिखाई दे रही जिस पर कुछ लोग रेंग रहे हैं। डेकोरेशन की गई है। पेड़ पे अ पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो कि लगे हुए हैं।

एक शटर अ दो शटर खुली हुई हैं जिसपर दो कुर्सी रखी हुई हैं एक गाड़ी खड़ी है एक शटर में एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है।

कुछ कच्छ कुछ पेड़ जो की झाड़ियां लगी हुई हैं पेड़ के बगल में वो दिखाई दे रही हैं।